यूज़र रजिस्ट्रैशन पंजीकरण फॉर्म कैसे बनाएँ और कैसे mysql डेटाबेस में यूज़र को पंजीकृत करें इस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले एक सलाह है कि आप पहले मेरे user login ट्यूटोरियल्स देखें मैंने उसका लिंक पोस्ट कर दिया है
मैं आपको इन ट्यूटोरियल्स को देखने से पहले वह करने की सलाह देता हूँ मेरा user registration से पहले user login बनाने का कारण है क्योंकि मुझे लगता है कि रजिस्ट्रैशन registration प्रक्रिया से पहले user login प्रक्रिया करना अधिक सरल है
एक बार जब आप सही से लॉगिन प्रक्रिया कर लेते हैं और आपको डेटाबेस में फील्ड्स मिल जाते हैं आप अपनी रजिस्ट्रैशन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं
मुझे इस तरह से करना अधिक सरल लगता है क्योंकि आपको पता होता है कि आप अपने डेटाबेस में क्या रजिस्टर कर रहे हैं
इसके साथ शुरू करने के लिए पहले भाग में हम अपना फॉर्म बनाएँगे और अपनी लॉगिन सूचना की मौजूदगी के लिए जाँचेंगे
मेरे मौजूदा ट्यूटोरियल्स में से मैं login session फोल्डर इस्तेमाल कर रहा हूँ
यहाँ मेरा लॉगिन सेशन और मेरे सभी फील्ड्स हैं लेकिन यहाँ मैं एक नई फाइल बनाऊँगा
पहले कुछ टैग्स जोड़ते हैं
मैं इसे index dot php के साथ मेरे लॉगिन सेशन फोल्डर के अंदर बनाऊँगा जिसे आपने देखा था मुख्य पेज है
log in log out और member पेज यदि यूज़र्स लॉगइन हैं और मैं इसे register dot php के रूप में सेव करूँगा
मैं एक यूज़र रजिस्ट्रैशन फॉर्म बना रहा हूँ जिससे कि यूज़र लॉगिन करने के निश्चय से पहले रजिस्टर कर सके
मैंने मेरा register dot php बना लिया है और मैं अपनी इंडेक्स फाइल भी खोलने जा रहा हूँ मैं फॉर्म के नीचे एक लिंक बनाऊँगा
और यह उस रजिस्टर पेज का केवल लिंक होगा और मैं यहाँ register टाइप करूँगा
जिससे कि हमें यहाँ register नामक एक लिंक मिलता है जो हमारे पेज पर जाता है जहाँ हमारे पास अभी कुछ भी नही है
पिछले ट्यूटोरियल का आगामी जहाँ हम लॉगिन कर सकते थे मैं केवल एक पेज का लिंक रखूँगा जिसमें आप यह करने से पहले रजिस्टर कर सकते हैं
अपने डेटाबेस में डेटा टाइप करने से पहले यदि मैं एक नया विंडो खोलता हूँ मैं php my admin में जाऊँगा
और यह डेटाबेस है जो इस्तेमाल होगा जिसे php login कहते हैं और यह मेरा users टेबल है
आप देख सकते हैंकि मैंने name नामक एक अतिरिक्त फील्ड जोड़ा है और मैं date नामक एक और फील्ड जोडूँगा
टेबल के अंत में यह date कहलाएगा और मैं डेट फॉर्मेट में रहूँगा तो यह कहाँ है यह यहाँ है
इससे पहले कि आप परेशान हों कि दिनाँक क्या होगी यह वर्तमान दिनाँक होगी जब यूज़र रजिस्टर करता है और हम वहाँ जाते हैं और उसे सेव करते हैं
अतः user login के पिछले ट्यूटोरियल से हमारे पास केवल id username और password है अब मैंने एक नाम जोड़ दिया है अतः यह यूज़रनेम होगा और हमने date जोड़ दी है दिनाँक जब वह रजिस्टर हुआ है
यहाँ ब्राउज़ करें हमें यहाँ कुछ वैल्युस पहले से ही मिली हैं
मैं इन्हें डिलीट कर दूँगा क्योंकि मैं मेरे यूज़र्स रजिस्टर कर रहा हूँ अतः मैं एक साफ़ डेटाबेस से शुरू कर सकता हूँ
मानते हैं कि मेरे पास कोई यूज़र्स नहीं है और यहाँ मेरे पास रजिस्टर पेज की मेरी लिंक है यहाँ मेरा रजिस्टर पेज है
अब मैं इस html कोड को संक्षिप्त में समझाऊँगा जो आपको बताता है कि इस पेज को कैसे बनाएँ और सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्म होगा
यह एक खुद से जमा होने वाला फॉर्म होगा यह register dot php को वापस जमा करेगा
और हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास यहाँ एक रो होगी
फिर हमारे पास दो कॉलम्स है अतः यहाँ दो td ब्लॉक्स हैं और पहले में होगा your fullname
मैं यह आपके लिए छोड़ता हूँ केवल तेज़ी से करने के लिए मैं इसे इस तरह से करूँगा
यहाँ हमारे दूसरे कॉलम में मैं अपना input type text रखूँगा और मेरा name fullname के बराबर होगा
अतः अभी आप देख सकते हैं कि मैं अपने असली पेज में वापस जाता हूँ register पर क्लिक करता हूँ
आप देख सकते हैं कि यहाँ यह एक कॉलम है इसे यहाँ अलग करते हैं यह इनपुट बॉक्स के साथ एक और कॉलम है
और साथ ही मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा और php कोड के अंदर मैं एक हेडर एको करूँगा मैं थोड़ी देर बाद स्पष्ट करूँगा कि मैंने ऐसा क्यों किया
अतः हमें यह मिल गया है इस समय हमारे पास यह है तेज़ी से करने के लिए मैं इसे नीचे कॉपी और पेस्ट करूँगा
अतः सुनिश्चित कर लें कि आपने t r से लेकर end t r तक चुना
मैं इसे नीचे पेस्ट करूँगा और फिर मैं लिखूँगा choose a username और स्पष्टतः मैं इसे username में बदलूँगा
मैं इसे फिर से पेस्ट करूँगा और लिखूँगा choose a password यह टेक्स्ट केवल सुरक्षित करने के लिए है उस परिस्थिति में जब कोई हमारे यूज़र के कंधे के ऊपर से देख रहा हो या कोई स्क्रीन लेने वाला सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर में घुसपैठी करने के लिए इस्तेमाल किया हो
और अगला यहाँ नीचेमैं इसे यहाँ कॉपी और पेस्ट करूँगा और लिखूँगा repeat your password
फिर से यहाँ password
हम फिर से यहाँ password नहीं लिख सकते हैं अतः मैं इसे repeat password कहूँगा
जब वह एक बार जमा कर दिए जाएँ यूज़र की कोई गलती करने की परिस्थति में सुरक्षा उपाय के रूप में हम यह पासवर्ड्स की तुलना करने के लिए इस्तेमाल करेंगे
और हमें कोई और फील्ड की आवश्यकता नहीं है यह अंतिम है
हमें date की आवश्यकता है किन्तु मैं यह तब करूँगा जब मैं फॉर्म जमा करूँगा
ठीक है तो यह हमारी बनाई फॉर्म है चलिए वापस जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं
आप देख सकते हैं कि यह कैसे समानता से व्यवस्थित है इसलिए हमने टेबल इस्तेमाल किया
हमें एक सबमिट बटन की भी आवश्यकता है
अपनी टेबल के नीचे मैं एक पैराग्राफ ब्रेक बनाऊँगा
और मेरा इनपुट टाइप यहाँ submit होगा; मेरा नाम submit होगा
साथ ही हमें मौजूदगी जाँचनी होगी और वैल्यू register होगी
चलिए रिफ्रेश करते हैं हमने कर लिया आप देख सकते हैं कि पासवर्ड्स फील्ड्स खाली हो चुके हैं
यहाँ हमारे पास यूज़र्स को वेल्युस टाइप करने के लिए एक fullname और username भी है
ठीक है इसके बारे में इतना ही है मैं ट्यूटोरियल यहाँ समाप्त करता हूँ
यदि आप इसका क्रमशः अनुगमन कर रहे हैं सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना फॉर्म लिख लिया है और यदि आपको पसंद हो तो एक और डिजाइन बनाइए
मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यह करने का और समय हो अतः आगे बढ़िये और अपना फॉर्म बनाइए जैसा आप चाहते हैं
इसमें जो आपका मन हो वो करें इन लेबल्स को बदलें
केवल यह सुनिश्चित कर लें कि आपको आपके बॉक्सेस और आपका रजिस्टर मिला हो
अगले भाग में हम यह जांचने पर बात करेंगे कि यूज़र ने प्रत्येक फील्ड्स में टाइप किया है या नहीं
हम पासवर्ड्स की तुलना करेंगे यह देखने के लिए यदि वह मेल खाते हैं मेरा मतलब मैं यदि कहता हूँ यहाँ दो पासवर्ड्स हैं और वह मेल नहीं खाते क्योंकि वह अक्षरों की लम्बाई से भिन्न हैं तो यूज़र रजिस्टर नहीं कर सकता है क्योंकि सम्भवतः उन्होंने एक गलती की है
मुहे विश्वास है कि आपमें से काफी देखने वालों ने कहीं न कहीं रजिस्टर कर लिया है और अपना पासवर्ड फिर से टाइप करोगे
हम अपने पासवर्ड्स को एन्क्रिप्ट भी करेंगे और इन फोरम्स में से कोई भी हानिकारक या कोई भी आडंबरपूर्ण ढंग से हानिकारक html टैग्स को हटाएँगे अतः हमारे रजिस्ट्रैशन फॉर्म में हमारे पास कुछ सुरक्षा होगी
अतः मैं अगले भाग में मिलता हूँ देखने के लिए धन्यवाद स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के लिए मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ